कुछ पंछी निचे दाना चुग रहें हैं तथा कुछ ऊपर --

पिक्चर लेता हुआ दिखाई दे रहा हैं इसका टी-शर्ट ब्लू रंग का हैं एवं इसकी पेंट ब्लैक रंग की हैं।

यह इमेज एक बड़े से मैदान से लिया गया हैं ज जो अभी सूरज के उगते समय दिखाया गया हैं और --

क्षेत्र है जिसका दरवाजे पर लिखा है जिला कोरोना टिका केंद्र सभी वयस्कों को टिका लगता है जिला प्रशासन सीतामढ़ी।

इसमें कोरोना के टीकाकरण का केंद्र है।

इस इमेज में एक रेग रेत का रेगिशतान हैं जिसमें एक बीच कुल्फी नाम का एक दूकान हैं।

तथा एक माइक लगा हुआ है और ऊपर फर्स पर सजाकर रिबन बांधा हुआ है और कई सारे लोग इसे पढ़ रहे --

और ये हवेली सफेद रंग का है। इसमें एक बड़ा-सा दरवाजा है और एक कई सारे खिड़कियां है।